इस चित्र में बहुत सारी चेयर्स तथा एक लाइट भी नजर आ रही है।

इस चित्र में कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक फ्रिज और एक कूलर भी लगा हुआ है।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

यह चित्र किसी बड़े से मॉल का है जहां पर बहोत सारी सब्जी तथा राशन का सामान नजर आ रहा है।

यहां पर एक टी_वी तथा एक लाइट और एक शीशा भी लगा हुआ है।

चित्र में बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं।

यह चित्र में बहुत सारे लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं तथा यहां पर साइकल भी नजर आ रही है।